ए-ए एक्स्ट्रा एगो दोगो तीनगो चारगो एगो मोटर साइकिल पर आदमी दोगो ओने एगो ठेला वाला आवैत है एने पोस्टर है बड़का गो पूल हई एगो दुगो ।

गेट है जाए वाला एक तला दो तला तीन तला घर है आउमे आदमी है एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो लोक है हो ओकर समान हाए --